में बहुत सारा ग्रीन चेयर्स भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहोत सारा बैलूंस भी लटका हुआ है।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

दीवार पर आईना भी लगा हुआ है।

दीवार पर बहुत सारा फूल भी लगा हुआ है।

एक औरत के हाथ में प्लास्टिक बैग भी पकड़ा हुआ है और स्कूल बैग भी बुका हुआ है।

ऑटो रिक्शा पर फूल का माला भी लटका हुआ है सामने में तीन लोग भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे बैनर लगा हुआ है।

सामने में लंबा सा सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे एयरफोन और फोन का डब्बा भी दिखाई दे रहा है।

कार्टून के सामने बहुत सारा फ्रिज भी रखा हुआ है।

सामने में एक फूल भी रखा हुआ है।

सामने में तीन आदमी भी दिखाई दे रहा है।

झाड़ी के नदिया भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में एस_बी_आई ए_टी_एम का बोर्ड भी लगा हुआ है।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

जमीन पर बहोत सारा कचरा भी फैला हुआ है।

सामने में एक बड़ा सा मशीन भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में कई सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

आसपास बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है।

चम्मच और ग्लास भी रखा हुआ है।

बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा कुर्सियां और आईना लगा हुआ है।

दीवार पर ऐ_सी भी लगा हुआ है और बहुत सारे लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।